यहां पे फूलों से सजाए हुए हैं मंदिर को।

यहां पे स्विमिंग पूल दिखाई दे रहा है।

बहोत बड़े बड़े झड़ियाँ हैं यहां पे--

बड़े बड़े पत्थर दिखाई दे रहे हैं।

ए_टी_एम के अंदर दो मशीन से--

ये एक बड़ा सा पूल है और ये एक स्विमिंग पूल है।

यहां पे एक बड़ी सी ट्रेन दिखाई दे रही है और यहां बड़ा सा ब्रिज है।

और यहाँ पेट्रोल पंप के अंदर बहुत सारे गाड़ियां दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे बिजली के बड़े बड़े खंभे दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे वायर्स हैं यहां पे।

अलग अलग रंग के पॉट्स दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पे कुछ टीन के शेड्स दिखाई दे रहे हैं।

और यहां पे बड़े बड़े पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

और यहां भी कुछ लोग भी दिखाई दे रहे हैं यहां डस्टबिन है।

यहां पे बिजली के बड़े बड़े खंभे दिखाई दे रहे हैं यहां पे।